गांव का मकान है इइ यहां अं बहुत अच्छा दृश्ट दिख रहा है यह कच्चा भी मकान है और पक्का भी मका --

बीच में रेड कलर का दिख रहा है।